ए_टी_एम के अंदर खड़े दिख रहे हैं रात का दृश्य दिख रहा है।

सजावट की समान दिख रहे है।